और जो ऊपर एकदम टॉप पे ग्रीन ब्लू पिंक ब्र पर्पल कलर की लाइट्स है।

चंद्रपुर का पिनकोड भी यहां पर लिखा गया है डबल फोर टू फोर जीरो वन ।

और इस इमारत के सामने जिल्हा कोषागार कार्यालय चंद्रपुर ऐसा कुछ लिखा है।

ये एक अ बस स्टॉप है।

और येलो और व्हाइट में कवर है।

ये आई थिंक रिसेप्शन हॉल हो सकता है।

जो है वो पानी की पीछे बड़ा सा एक पेड़ का एक समूह है।

कुछ मकान बनके एकदम रेडी हैं।

यहां पे मेरे को दो ग्रीन बस दिख रही है।

और कुछ इधर उधर देख रहे है।

ये जो मेरे सामने जो फोटो है इस फोटो में एक बस है।

पिलोज़ है और पिलो एक दम अ मतलब छ सात पिलो है।

ऐ आई थिंक एक वाटर पार्क है।